ओर आ-कुछ ये बच्चों बैठे है उनकी कट्टिंग करते हुए नजर आ रहे है धन्यवाद ।

इस चित्र मे एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज के ऊपर कुछ परदे लगे हुए है और खुरी रखी हुई है।